यहां पे शादी हो रही है जहां पे बाहर नीले और गुलाबी रंग के --

इन किताबों के रंग पीले लाल हरे से बहोत कुछ है यहां पे तो --

यह पे हरी हरी घास है आजू बाजू में लाइटें भी है जो जल नहीं रही है।

सजाया हुआ है यहां पर फूल है जिनके रंग--

नीचे बहुत सारी घास है जिसका रंग हरा है और --

लाइटे भी जल रही हैं जिनके रंग पीले हैं।

बहोत सारे पत्थर रखे हुए जिनका रंग भूरा है।

यह एक बस है जीस बस का रंग सफेद और --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

यहां एक गुफा है जिसमें एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा है।

इसमें एक कैंटीन है कैंटीन नाम पार्डी हॉस्पिटल है।

बहोत सारी गाड़ियां दिख रहीं है सफेद कलर की दो स्कूटी है एक --

यहां पे बहोत सारे लोग है एक लाल रंग का --

एक लाल रंग की मशीन भी है जो नीले रंग के ट्रैक्टर से जोड़ा हुआ है।

और वहां पे बहोत सारे काले रंग के टायर रखे हुए--

बुड्ढे के बाल बेच रहा है और वहां पे एक दुकान है जिसका नाम लक्ष्मी स्वीट्स है।

सामने एक पीले और सफेद रंग का झंडा भी लटका हुआ हैं।

इसमें तीन आदमी काम कर रहे हैं एक आदमी ने--

आजु बाजु बैठने वाले बेंच हैं जिनके रंग लाल है।

यह एक जिम है यहां पे बहुत सारे जिम के सामान रखे हुए हैं।

सीढ़ियां है सीढ़ियों के ऊपर एक कपड़ा है जिसका रंग लाल है।

यहां पे एक दीवाल है जिसमें सफेद और काला रंग है इसमें नो स्मोकिंग लिखा हुआ है।

यहां पे एक गाड़ी दिख रही जिसका रंग सफेद एक गाड़ी दिख रही जिसका रंग काला है।

एक बड़ी सी वैन है एक आदमी है जो झोला लिए बीच रस्ते में खड़ा हुआ है।

और एक सफेद कलर की चार पहिया खड़ी है।

जिसका नाम श्री सौराष्ट्र कड़वा पाटीदार सेवा समाज है।

एक ऐ_सी कंप्रेसर दिख रहा है एक पीले रंग का जे_सी_बी दिख रहा है।

जो बच्चों के कपड़े मिलते हैं उसके बाजू में दिपक करके दुकान हैं फिर--

इसमें पांच पलंग है जिनके ऊपर हरे और सफेद कलर का बिस्तर बिछा हुआ है।

एक टेबल है जिसके ऊपर शो पीस रखा है एक गुलदस्ता है और एक ए_सी है।

यहां पे बैठने वाली दो कुर्सियां रखी है जहां पे रखी है वहां का रंग--

यह एक कैफे हैं जहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी है नीले और पीले रंग में शीशे हैं।

काउंटर है पंखे हैं लाइट है और --

टेबल भूरे रंग का है और ऊपर लाइटिंग है और यह कैफे सफेद रंग का है।

यह एक गाड़ी है सफेद रंग की जिसमें डब्ल्यू_बी --

यह एक खाने की दुकान हैं जिसका नाम में पिज़्ज़ालोन ।

यहां एक खाने की दुकान है जिसका नाम बेंगलुरु इयांगरस है।

यह एक ईसाई धर्म का चर्च है जिसके उप --

त तारे जुड़ी हुई है और पेड़ भी है।

इसमें बहोत सारी झाड़ दिख रही है दो पत्तरे दिख रहे सफेद रंग के --

की यहां पे काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीस पास --

यहां एक मच्छी की दुकान है जहां पे बहोत सारी मच्छियाँ रखी हुई है।

यहां पे पीले रंग के फूल और रंग बिरंगे फूल हैं।

पीला है और एक घर है जिसका रंग सफेद है एक घर की--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

एक लड़की ने झंडा लिया है जिन में रंग--

यहां पे एक ब्रिज दिख रहा है जिसका रंग हरा और पीला है।

यह एक दुकान है जिसका नाम है चाय सुट्टा बार बाहर दो बोर्ड लगे है एक --

यहां पे आजू बाजू बहोत सारे गाड़ियां हैं एक बाइक है काले रंग की --

एक रिक्शा है दो आदमी सफेद रंग के कपड़े पहने बैठे हुए --

और वहां पे दो तीन लोग लाल रंग के कपड़े मे खड़े --

यहां पे दो नीले रंग के पलंग है जिनमें सफेद रंग से बुनाई की गई है।

ऊपर बहुत सारी लाइटें हैं। बाजू में गुलाबी रंग के दीवाले हैं।